बहोत सारी चेयर्स भी दिखाई दे रही है बैठने वाली यहाँ पे बहोत सारी इंसान भी दिखाई दे रही है बहोत सारी जाली बहुत सारी हरी हरी दूर्वा भी दिखाई दे रही है बहोत सारे बादल भी दिखाई दे रहा है बहोत सारा मैदान दिखाई दे रहा है।

सोखा भी दिखाई दे रहा है सोफ़ा पी सोफ़ा की पोस्ट और क्लास की प्लोटिंग फोटो भी दिखाई दे रही है बहोत सारे बलून्स भी दिखाई दे रहे हैं।